जहां पर एक स्टेज दिख रहा है और एक डांस फ्लोर दिख रहा है और फोटो सेशन के लिए एक जगह भी दिख रहा है।

यहाँ पर बोहोत सारे आदमी है जो झंडारोहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के आस-पास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आ डी जे भी --

ये कपडे की दुकान हैं जहां पे छोटे-छोटे पेंट टॉवल टंगे हुए हैं। शाल भी दिखाई दे रही है ब्लैन्केट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में कोई नहीं है पर सारी सामान जो है वो अच्छी तरीके से रखी हुए है हैंगिंग करके रखे हुए हैं।

टॉवल शाल स्वेटर जैकेट भी दिखाई दे रहा है।

जैसे इस दृश्य में दिखाया जा रहा है कि ये एक स्कूल का जैसे लग रहा है जहां बच्चों के हाथ में --

चार्ट पेपर है पिंक और ग्रीन कलर का कुछ बच्चे इस में कुछ बना रहे कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे एक महिला टीचर बैठी हुई हैं। टीचर जो है बच्चे की और देख रही हैं पीछे एक ग्रिल है।

बुक्स फ्लैग भी दिखाई दे रहे। --

ये एक बैंक की तस्वीर लग रही है। बैंक का नाम यूनियन बैंक है बैंक जो है बहुत पुरानी है सामने एक --

यहँ दो व्यक्ति है एक बूढा व्यक्ति है जो हाथ में लाठी लिए हुए है सामने स्कूटी बाइक सब है बैंक का शटर हाफ खुला हुआ है।